लड़का भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पत्थर वगैरह सब रखा है।

और इधर साइड जस्ट सामने पुल भी है।

पूल हैं आई थिंक गंगा जी है यहाँ बहोत की बड़ी है।

क्या है ये पता नहीं बट अट बट अच्छा है।

काफी यहाँ कार वैगेरा बाइक वैगेरा खड़ी हुई है।

और बोलेरो वैगेरा भी खड़ा है।

यह डान्स क्लासेस है आय थिंक और डान्स क्लासेस में चार लड़कियां डान्स सिख रही है प्रैक्टिस भी कर रही है और सामने --

काफी बड़ा लग रहा है यार लाइब्रेरी --

कैंप बन डहा डर काजे सोठे --

काफी अच्छे हॉस्पिटल साफ सुधरी लग रही है और आमने - सामने बगल मे --

काफी बड़े-बड़े पौ पेड़ भी है और बहोत ही पेड़ देख रहे है यहाँ पे--

पत्रा है पत्रा काफी जूना लग रहा है टुटा-फूटा हुआ जो अगल-बगल बैकग्रॉउंड है वो भी एकदम --

शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी--

यहाँ काफी जूनि है और विद्यालय के जस्ट सामने--

आ फोर व्हीलर पड़ा है काफी बाइक है और एक--

बस्तर डेरी फार्म है ये --

और यहाँ पे काफी नाश्ता वगेरा बिक रहा है।

बहुत ही अच्छा बैलून पूरा राउंड में लगा हुआ है।

यह पूरा पहाड़ी एरिया है और --

और ग्रे कलर का पूरा यहाँ का कुछ दूरी पे वातावरण बना हुआ है आसमान भी ग्रे कलर में ही दिख रहा है।

यह फूल का दुकान लग रहा है आय थिंक और फूल की दुकान पे काफी बड़ा गजरा टंगा हुआ है।

एक टा बा य स कुल लोग दखा देछे तार पाठे एक टा झूरी रहीचे दखा देछे एक टा बा छे छिलाई पुड़ाई लोग टा आछे छिलाई रोक छे दखा देछे।

एक टा बा य स कुल लोग दखा देछे तार पाठे एक टा झूरी रहीचे दखा देछे एक टा बा छे छिलाई पुड़ाई लोग टा आछे छिलाई रोक छे दखा देछे।

काफी प्लेन और एकदम अ साफ सुधरा --

और पेड़- पौधे काफी है।

और बिल्डिंग जो है जूनि दिख रही है काफी और --

और बिल्डिंग जो है जूनि दिख रही है काफी और--

और अभी शटर फिलहाल लॉक दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग जो है काफी पुरानी लग रही है।

यल्लो कलर का पोर्च है छोटा-छोटा एक यल्लो कलर का मूर्ति रखा हुआ है साइड में ब्लू कलर का --

काफी सुनसान है रात का समय है।

काफी सुनसान है रात का समय है।